यह एक टेंपल दिखाई दे रहे हैं जो कि ट-चाइना टेंपल है ।

यहाँ पर एक मंदिर हैं और जिसमे बुद्ध भगवान की मूर्ति बैठी हुई है और साइड में कुछ ढोलक वगेरा राखी हुई हैं।

उस जे.बी.सी. मशीन के द्वारा आ खुदाई की जा रही है। मशीन के द्वारा खुदाई की जा रही है। यहाँ पर दो तीन अ एंगल पड़े हुऐ हैं लोहे के।